कार में डीजल का पम्प भी दिख रहा है और का व्यक्ति कार को ठीक कर रहा है कार का टायर भी दिख रहा है और कार का छोटा सा हिस्सा ही दिख रहा है बस ।

और टेबल पर बहुत से सामान रखे हुए है पेन्सिल पेन वगेरा और कलर पेन भी है बहोत सी बच्चिया है और बहोत से बच्चे है।

यहाँ पर एक खेल का मैदान है जहां पर बहुत भीड़ लगी हुई है और बच्चे को खेल का सामान भी है।

एक स्कूल हैं जहाँ बच्चे बैठे हुए हैं बच्चे बेंच पर बैठे हुए है और कुछ हाथ में ग्राफ पेपर भी रखे हुए है स्कूल की बिल्डिंग हैं ।

शादी हो रही है जहा बहुत सी व्यक्ति आये हुए हैऔर एक बिल्डिंग बहुत अच्छी सजी हुई है और बिल्डिग पर बहुत सारी सर्किट लगी हुई है और येलो --

ए.टी.एम है जहा बहुत भीड़ लगी हुई है जहा बहुत से लोग खड़े हुए है दो लोग ए.टी.एम के पास ही खड़े हुए है जो पैसे निकाल रहे है।